तरह तरह की गाड़ियां ठीक हुई तथा उनका मेंटेनेंस किया जाता उनका इंजन का भी काम इस गेराज में किया जाता है।

आप यहाँ आ के अपने दिन का एन्जॉय कर सकते है तथा खानों के स्वाद का लुप्त उठा सकते है ।

जैसे वाइन एटसेक्ट्रा लाइक दिस ऐसे आप पी सकते हैं इस शॉप में बहुत ही कॉकटेल और भी अवेलेबल है।

कोई सी भी किताबे खरीद सकते हैं इस बुक शॉप मैं--

ये पानी स्टोर करने के लिए होता है तथा बाढ़ को नियत्रण करने के लिए होता है बाढ़ से लोगो को बचाने के लिए बैराज --

नर्सरी में आप पेड़ खरीद सकते है नर्सरी में तरह तरह के पेड़ उपलब्ध होते है इस --

जेसे सेल फोन और अलग अलग तरीके के अलग अलग कंपनी के मिलते है ।

इसमें लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तथा अपने खुदा को याद करते हैं तथा अपनी मुरादें--